और करेले और कच्चे केले भी टंगे हुए हैं इन सब मैं हरी-हरी सब्जिया रखी हुई हैं और ये --

और उन ट शर्ट पर वाइट कलर का लाइट का भी फोकस गिर रहा हैं।

वाइट और रेड कलर की और ब्लू कलर की और आइस ब्लू कलर की टशीट हैं।

मैरून कलर की टी-शर्ट और चढ़ा पेहेन कर और कफ़न पर रुमाल बांधकर नदी की और देख रहा हैं।

शॉप है और दो व्यक्ति मास्क बांधकर खड़े हुए हैं एक व्यक्ति और एक व्यक्ति --

इस इमेज के अंदर चार से पांच व्यक्ति एक जगह खड़े हैंजो की वह ठेला गाड़ी के पास खड़े हुए है।

ये मोबाइल चला रहा हैं और वह व्यक्ति मोबाइल मैं कुछ देख रहा हैं इस वीडियो मैं ये दिख रहा --

नदी के जस्ट कोने पे रखी गयी हैं और कोने के आस पास पत्थर ही पत्थर हो रहे हैं।

ये नीले और तमाकू कलर के रखे हुवे हैं और वह चारो --

पीले और ब्लैक कलर की ये बाउंड्री बानी हुई हैं जिसके अंदर फूल भी हैं गुलाब और पीले फूल भी हैं।

इस इमेज मैं एक व्यक्ति आइडिया ऑफिस के काउंटर पर वाइट टी-शर्ट पहनने --

चार तरके की अंगूठी है और एक हाथ में चैन पेन रखी है उसने।

इस इमेज मैं एक ग्राउंड दिख रहा है जो कि साइड में एक कोकोनट का पेड़ भी लगे हैं तीन से चार।

ब्लैक कलर की चेयर चेयर रखी गई है और वाइट कलर का एक --

सभी स्थानों पर पूजा हो रही है और गन्ने की भी पूजा कर रहे हैं।